सामने एक होल दिखाई दे रहा है होल बहोत ही बड़ा दिखाई दे रहा है।

यहां पर इसका लोगो रेड कलर का दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे बेंच भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।